उसके बाद पाइनएप्पल भी है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी यहां रखे हुए हैं।

यह तस्वीर तो किसी राजा महाराजा के महल के सिंहासन की लग रही है बहुत --

और फूल से सजा हुआ है लाइटिंग किया हुआ है।

रोड पे कीचड़ है इसी से मैंने अनुमान लगाया कि बरसात के टाइम का है।

केला का पत्ता है काफी हरियाली है कुछ टीन के घर बने हुए हैं।

यहां पानी पूरी वाला है कुछ लोग पानी पूरी खा रहे हैं कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं एक --

एक सेंटर खाली है यहां डीजल भी मिल कुछ बाइक साइड में पार्क है सूरज ढल रहा है पेड़ पौधे हैं शाम का समय है

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है इसका थीम साउथ इंडियन दिया गया है।

काफी अन अच्छे से सजावट की गई है इसका थीम वाइट कलर है।

लाल दरी बिछाई हुई है उजला सोफा है।

ये के_एफ_सी के बाहर का फोटो है यहां सामने में पोस्टर लगा है के_एफ_सी रेस्टोरेंट का ज़ाइका के_एफ_सी रेस्टुरेंट ।

के.एफ़.सी. नॉन-वेज के लिए फेमस है स्पेशली चिकन के लिए फेमस है।

मेकअप का समान सब भी है शैम्पू है साबुन है ।

कॉलेज की बिल्डिंग लाइट ब्लू थीम में है साफ सफाई का मेंटेनेंस किया गया है।

फिर ये सुबह के टाइम की तस्वीर है धूप निकला हुआ है।

इस तस्वीर में हम कह सकते हैं हमें क्षितिज दिख रहा है यहां धरती और आसमान मिलते हैं पर --

कूकर है शायद फोन है बट क्लीयर दिख नहीं रहा है चेयर है।

जगह का नाम है कटिहार में वहां पर है।

अच्छा इक्विपमेंट दिया गया है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है फिर --

ये तस्वीर एक छोटे से रेस्टोरेंट की है जिसका नाम कोलकाता बिरियानी है इसके बगल में आई_डी_बी_आई --

यहाँ बिरयानी कुछ लोग बिरयानी खा रहे हैं यहाँ बाहर --

यह कोई ब्रिटिश जमाने का महल लग रहा है क्योंकि साइन ऊपर क्रिश्चियन का दिया हुआ है।

ये तस्वीर एक इंस्टीट्यूट की है यहाँ पे बाहर में एक स्कूल वैन है यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पढ़ाई भी होती --

मुबारक कॉटेज गर्ल्स हॉस्टल यहाँ कान्टैक्ट नाम है रामपुर रामपारा कटिहार का है ये ।

उसके बाद यहां पेड़ पौधे से डेकोरेशन किया इस तस्वीर में इंसान के पास तीन पेड़ है नीले रंग की अपाची है।

इनके बगल में दो मूर्तियां और है जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है मुझे नहीं पता है।

काफी अच्छा मार्बल है काफी शांत जगह लग रही है यहां मेडिटेशन करने के लिए अच्छा रहेगा--

यह तस्वीर किसी मिठाई दुकान की है क्या नाम है अनमोल मिष्ठान भंडार।

पैकेट बंद है हार्पिक है बाथरूम क्लीनर टॉयलेट क्लीनर धारा का तेल है नमक है एम_डी_एच किचन किंग मिर्ची मसाला और --

बगल में स्वास्तिक का निशान है एक अंकल खड़े होके नोटिस बोर्ड पढ़ रहे हैं शायद काउंसलिंग का है।

गुलाबी और नीला रंग का मिर्ची लाइट जिसको कहते हैं वह लगाया हुआ है पंडाल लगा है ऊपर व्हाइट और पिंक कलर का पर्दा --

ये तस्वीर कपड़े दुकान की है यहां कई प्रकार के कई उम्र के बच्चों के कपड़े लटके हुए हैं।

कुर्ती छोटे-छोटे बच्चों की फ्रॉक जींस टॉप --

इसमें हम लोग को वेट लगा के अप एंड डाउन करना पड़ता है जो हम लोग के लेग पे इफेक्ट करता है मसल्स पे।